यह माला स्टेज की बहोत अच्छी सजावट की गई है और इसे बहोत अधिक फूलों से सजाया गया है।

बीच में यहाँ पर बहोत हरा-भरा लग रहा है। आस पास बहोत जमीन है।

और बच्चे खेल खेलने के लिए जा रहे है और यहाँ पर कुछ टीचर लोग भी खड़े हुए है और बच्चों को अपने साथ ग्राउन्ड पर ले जा रहे हैं।